जिसमे एंटरप्राइज लिखा हुआ है।

और उसके बगल में एक घर दिख रहा है |

और उसके आगे की ओर दोनो साइड --

पीले और लाल रंग का एक दरवाज़ा दिख रहा है ।

दो लड़के खड़े हुए हैं एक लड़की --

यहाँ तीन बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं एक पुरानी बिल्डिंग है एक --

यहाँ बहुत उबड़-खाबड़ रोड दिखाई दे रही है।

हरे-भरे पेड़-पौधाओ से हमें --

दो ई-रिक्शे खड़े हुए हैं।

एक दुकान दिख रही है ।

जोज वाइट कलर की है ।

और कुछ मैडम लोग खड़े हुई हैं ।

तीन बाइक खड़ी हुई हैं ।

और रूट के बगल से --

उसके ऊपर नदी के ऊपर एक बोहत बड़ा पुल बना है |

हरे कलर के बृक्ष लगे हुए हैं ।

चार-पांच गड्ढे खोद चुके है और बहुत सारी --

अंदर हरी-हरी घास दिख रही है।

बोहत आदमियों की भीड़ लगी हुई है |

नीचे छाया मे पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो बोहत सुंदर दिख रहे हैं ।

दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लकड़ी का सामान --